इस इमेज में मुझे एक कैफे नजर आ रहा है जो सेलिब्रेट इंडिया नाम से समझा है।

हैंडवाश सा नजर आ रहा है बाल्टी नजर आ रहा है कपड़ा नजर आ रहा है दूर में बेड नजर आ रहा है चटाई नजर आ रहा है।

लोग मास्क लगाए हैं कुछ लोग बिना मास्क के बैठे हुए हैं।

अच्छी नजर आ रही हैं घरे नजर आ रहे लाइट्स नजर आ रहे ग्राउंड नजर आ रहा जिसमे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस समय जो मुझे टहलना चल रहा है घर के ऊपर--

इसमें मुझे एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसमें लाइटें जल रही हैं बहोत सारे लाइन के फूल नजर आ रहे हैं नजर आ रही है।

नजर आ रहा लाइटें नजर आ रही नजर आ रहा बाइक नजर आ रहा--

पानी के ऊपर नजर आ रहा है आदमी नजर आ रहा है बच्चे नजर आ रहे हैं व्यक्ति नजर आ--

इस ईमेज में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसमें दुतल्ला बना हुआ है नीचे में बहुत सारा बिल्डिंग में घर में लोग बैठे हुए।

इस इमेज में मुझे एक रूम नजर आ रहा है जो की बहुत बड़ा है और रूम में पूरा बिजली के पास बना हुआ है। ऊपर दीवाल में लाइटें जल रही हैं जो बहुत सारी लगे हुए हैं।